बलग में एक आदमी खड़ा हुए हैं और उसके अंदर बहोत सारे आदमी खड़ा हैं।

जिसमें बहोत सारे आदमी खड़े हैं कुछ नाव खेव रहे हैं कुछ रस्सी पकड़े हुए हैं।

इस ऊपर दो भैंस बिल रहे हैं एक लेडीज घूम रही है।

यहाँ एक नृत्य कला करने की कलास है जिसमें कुछ लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं।

इसमें बजाज का फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है। नीचे मोटर साइकिल लगा हुआ है। मने --